इस चित्र में एक पहाड़ नजर आ रहा है जहा से एक झरना बहता हुआ दिख रहा है।

इस चित्र मे एक दुकान नजर आ रही है जहापर सामने कुछ वाहन भी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे एक कमरा नजर आ रहा है। जहा पर सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे है।